एक घर दिख रहा है।

गोल्डन कलर का ब्लाउज पहना है।

इमारत की खिड़कियाँ दिख रही है ।

टेबल के पास दीवार पे एक बैनर लगा हुआ है ।

गार्डन है गार्डन में एक सफ़ेद कलर का स्टेज बना हुआ है।

पास में उपर छत पे लाल और फुग्गे टंगे हुए है।

दुकान के अंदर लाइट दिख रही है।

एक रोड है जमीन है।

एक लड़का बैठा हुआ है।

झाड़ू की पत्तियाँ दिख रही हैं एक महिला खड़ी हैं।

ऊपर रेलिंग दिख रही हैं।

अलमारी दिख रही है अँधेरा है।